पार्टी फंक्शन इसमें शादी भी --

एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। पावर हाउस के बगल से --

ये इन सतहत्तर है यहाँ से लोग पटना --

बिजली बत्ती लगा हुआ हैं और एन एच सतहत्तर का भी --

सामान दिखता है जैसे डोलची हो गया सामान रख --

अ घास दिख रहा है और मैदान के काते काते जो है --

ए- किताब मिलता है। जैसे अ- प्राइवेट स्कू --

ये गुरुद्वारा है यहाँ पर सिख ईसाई धर्म के लोग --

और भगवान का स्मरण करते हैं इस गुरु --

तास भी दिख रहा हैं पेड़-पौधा भी दिख रहा हैं और नीचे रोड भी हैं।

दुकान है इलेक्ट्रॉनिक दुकान इसपे लिखा हुआ है और क्रैक ग्राइंडिंग है इसके पीछे गाछ भी है।